यह एक मछली के दुकान की फोटो है।

यह एक कमरे की फोटो है इस कमरे में एक बेड लगा हुआ है उस बेड पर अलग-अलग आकार और अलग-अलग रंग के तकखिए लगे हुए हैं।

एक थंब्सअप की बोतल है एक पानी की बोतल भी रखी हुई है।

सलून के बाहर कुछ बाइकें खड़ी नजर आ रही है।

सामने से एक सफेद रंग की कार आती हुई नजर आ रही है।

यह एक सड़क की फोटो है इस सड़क के किनारे कुछ ठेले नजर आ रहे हैं और कुछ व्यक्ति आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुछ आसपास गाड़ियां भी नजर आ रही है ऑटो रिक्शा जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में कुछ बच्चे योगा करते हुए नजर आ रहे हैं।

सभी एक साथ मिलकर योगा कर रहे हैं इनमें से कुछ लड़के और कुछ लड़कियां है।

यह एक सब्जी मंडी की फोटो है इस सब्जी मंडी में कई प्रकार की सब्जियां देखने को मिल रही है।

टमाटर है आलू है गाजर है और भी कई प्रकार की सब्जियां है।

इस फोटो में सामने बेकरी वाले की दुकान है उसी के बगल में---

इनमें से एक बस पर उत्तराखंड परिवहन निगम लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है यह रास्ता काफी लंबा दिखाई दे रहा है।

और वहीं कुछ आसपास और भी बाइक और स्कूटी खड़ी नजर आ रही है।

इस दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं जिनमें से कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष --

यह एक सफेद रंग की कार है इस कार को एक व्यक्ति ठीक करता हुआ नजर आ रहा है ।

यह एक सड़क के फोटो है इस सड़क के किनारे कई गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है।

सामने से एक गाड़ी आती हुई भी दिखाई दे रही है।

वहीं कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं ।